यहाँ हमे आईडिया का एक शोरूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक तरफ काँच का दरवाजे दिखाई दे रहा है |

यहाँ हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो बैग टाँगे है और रजिस्टर में देख रहा है।

ऊपर शेर के दो स्टैचू बने हुए हैं और कलश बने हुए हैं।

यहाँ आप देख सकते है | यहाँ पे स्टेज पे डांस परफॉरमेंस चल रही है |

यहाँ हमें एक दुकान दिखाई दे रही है और ये फूलों की दुकान है।